इस इमेज में मुझे बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है और बड़े बड़े हम्म खम्बे से लगे हुए है।

इस पिक्चर मे मुझे ट्रेन दिखाई दे रही है बहुत सारे लोग जाते हुए दिखाई दे रहे है और प्लेटफॉर्म सात नंबर लिखा हुआ है और पेड़ दिखाई --

इस इमेज में मुझे एक दुकान सी दिखाई दे रही है उसके बहार बहुत सारे मोटरसिक्ला रखी हुई है और एक एक कार दिखाई दे रही है।